ये एक आईडिया ऑफिस है जिसकी ओपनिंग है और इसमें राय रेड और येलो कलर के--

और चार लोग सिविमिंग करने के लिए आये है और ये सायदा येलो है अव--

ब्लू कलर अ अ ब्लू कलर का है और पीछे भी काफी कलर हैं।

एक ग्रीन कलर का ऑटो है ग्रीन और येलो कलर का ऑटो है ऊपर पेड़ भी है काफी लोग है ।

लोग है जो इलेक्टिशियन का काम कर रहे है नीचे की फर्श --

ये पुराना स्टोर है यहाँ पे थैलो दाल चावल साबुन--

और इधर राइट-साइड मे तीन लोग बैठ कर बाते कर रहे है और--